यहां पे बच्चे आई.टी.आई. की पढ़ाई करने आते हैं। बोहोत सारे बच्चे रोज यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं।

यह एक ऑटो स्टैंड है यहां पर बहुत सारी ऑटोये लगी हुई हैं इस ऑटो पर एक साथ आठ दस लोग सफर करते हैं।

चर्च है यहां पे ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करने आते हैं मोमबत्तियां जलाते हैं।